इस चित्र मे हमे कपड़े दिख रहे है टूल दिख रहे है लाइट दिख रही है जमीन दिख रही है टेबल दिख रही है।

इस चित्र में हमें दरवाजा दिख रहा है जाली दिख रही है घर दिख रहा है मिट्टी की जमीन दिख रही है आदमी दिख रहा है पेड़ दिख रहे है।

इस चित्र में हमें आदमी दिख रहा है टंकी दिख रही है पाइप दिख रहा है मछली दिख रही है चादर दिख रही है।

इस चित्र में हमें दो आदमी दिख रहे हैं कुर्सियां दिख रही है आइना दिख रहा है टी.वी दिख रही है डब्बे दिख रही है दीवार दिख रही है।

अलमारिया दिख रही है जमीन दिख रही है लाइट दिख रही है।

इस चित्र में हमें औरते दिख रही है पंखे दिख रहे हैं आदमी दिख रहा है।

दरवाजा दिख रहा है लकड़ी दिख रही है।